यहाँ पे कुछ बोतल भी रखे गए हैं।

यह एक जंगल का दृश्य दिया गया है।

यह एक दुकान का दृश्य दिया गया है।

नीचे में बहुत सारा घास भी जमे हुए हैं।

यह एक डेम का दृश्य दिया गया है यहां पे बहुत सारा पानी दिखाई दे रही है।

यह एक बहुत बड़ा ढाबा का दृश्य दिया गया है।

यहां एक सामने में काउंटर दिखाई दे रही है जो की काउंटर को ऊपर बहुत सारे कफ रखे गए हैं।

यहां पे कुछ पेड़ भी दिखाई दे रही है।

यह एक दुकान का दृश्य दिया गया है।

यहां पे एक बांस का रुख भी दिखाई दे रहा है।

यह एक किराना दुकान का दृश्य दिया गया है।